ये एक बहुत सुंदर सजावट हो रही है कुछ फंक्शन चल रहा है यहाँ पर वह सारे लोग भी बैठे हुए है व्हाइट --

यह एक मंदिर टाइप का है यहाँ पे बहुत सारे लोग है इन्होने किसी ने व्हाइट कलर की शर्ट पेहना हुआ है।

ये एक रोड है इस पे बहुत सारी गड़िया जीप खड़ी हुई है तो --

यहाँ पर एक डोगी है उसका इलाज चल रहा है दो डॉक्टर है एक ने मास्क लगाया हुआ है और चसमा--

ये एक दुकान है इसमे व्हाइट कलर पुता हुआ है और बहुत सारी टीवी लगी हुई है ब्लैक कलर की बड़ी एलसीडी --

--और बहुत सारे है जिन्हे छेद हो रहे है टमाटर मे--

एम तकिये है व्हाइट कलर के दो है और एक और भी है।

ये बहोत सुंदर बिल्डिंग है इस पे वाइट कलर पुता हुआ है एंड पिंक टाइप का भी है गाजरी कलर और नीचे कुछ अ सरिया स जपत हो रही है।

--और किसी ने पिंक साड़ी पहनी हुई है और किसी ने सूट पहेना हुआ है ग्रीन पे--

अ नीचे बगीचे टाइप का बना हुआ है और इसमे ये बहुत सुंदर बिल्डिंग --

यहाँ पे एक दुकान है बहुत सारा समान रखा हुआ है कपड़े रखे हुए है रेड कलर का कुर्ता है व्हाइट कलर का भी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर महिलाएं हैं जिसने बहुत कलर के --